यह एक पेट्रोल पंप का चित्र है।

और बहुत सारे खिड़की है।

गाड़ी पे दो लोग खड़े हैं और बहुत सारे बैलून हैं।

पेड़ पौधे हैं और एक टावर है।

और यहां पे दीवार पे बहुत सारे चित्र बनाए हुए हैं।

यहां पे टाइल्स वगैरा लगाया हुआ है।

यह एक बीयर बार का दुकान है।

यहां पे बहुत सारे लाइट लगाए हुए हैं।

टी_वी भी है और टेबल है टेबल के ऊपर एक बोटल रखा है ग्रीन कलर का।

यहां पे बहुत बड़ा सा हाउस का चित्र है।

फूल नजर आ रहे हैं और यहां पे बहुत सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

और गाना म्यूजिक बजा रहे हैं।

स्कूल के पीछे घर पे टंकी है पानी वाला।

यह एक छलकी है ।